इसके चारों तरफ लगे पेड़ पौधे इस पाठशाला की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं।

यहां पर दाई ओर एक कर्मचारी रेल की पटरियां सही कर रहा है।

इस पार्क में छाह देने अथवा ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे--

यह एक अत्यंत ही सुंदर बगीचा है।

इस बगीचे में बहोत ही सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए है।

देखने में लग रहा है यह छत काफी बड़ी हुई है।